और यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे है और एक छोटा-सा मकान दिखाई दे रहा है।

और लाइट भी दिखाई दे रही है एक सोफा दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हैं जो सफेद कलर से डकी हुई हैं।

और अ कुछ पत्थर पड़े हुए है और आदमी --